इसके नीचे एक व्हाइट कलर की लाइट लगी हुई है| लाइट जो आदमी के मू के उपर चम्मक उसके पीछे छोटी सी मूर्ति है।

जेसे की अपने को नजर आ रहा है | घर बना हुआ है |जो की व्हाइट कलर का बना हुआ है पास मे दिखाने किएक जाली है एक जाल पास मे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह अपने को नजर आ रहा है | यह एक बस है| बस के आगे बड़ा सा कांच लगा हुआ है कांच के उपर के साइड मे टॉप है जो की यह कांच है उसके पीछे बस है बस पीले कलर की नजर आ रही है बस --

पहाड़ है जो हरे कलर की पत्थरों से घासो से गिरे हुए है नजर आ रहे है पत्थर के उपर एक आसमान है आसमान के नीचे की तरफ एक आदमी है जो की एक पत्थर के उपर बेढ़ा हुआ नजर आ रहा है आदमी ने--